और कुछ बाइक खड़ी हैं यहां कोई शाइन बोर्ड भी लगा हैं एक तरफ बहुत सुंदर हरे भरे पेड़ लगे हैं और एक तरफ बहुत सुंदर रंग बिरंगी बिल्डिंग हैं।

बिल्डिंग भी समय के साथ काली पड़ गयी है पर उः देखने मे बहोत बड़ी और सुन्दर दिखाई पड़ती है यहा चारो तरफ हरियाली है।

यह एक सड़क है सड़क पर एक तरफ मोटरसाइकील खड़ी है और एक तरफ स्कूटी पर कुछ आदमी आ जा रहे है।

यह पार्क में बना हुआ एक सुंदर सा फवारा है इसको गुलाब या लोटस के फ्लावर शेप दी गई है इसमें पानी--